जिम में बहुत सारा सामान लगा हुआ दिखा--

यहां पर बच्चे चेयर्स पर बैठे हुए हैं बच्चा अपना ड्राइंग कर रहे हैं ज्योमेट्री बॉक्स भी दिख रहे हैं।

सामने बीबो कैमरा एंड मस्क भी लिखा हुआ है एक डिब्बे पर रियल लिखा हुआ है।

यहां पर एक कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है।

इस होटल का नाम नेचर्स कैंडी होटल है और इसमें कुर्सियां भी लगी हुई--

नदी में बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

और सामने सफेद रंग का आसमान भी दिखाई दे रहा है।

पास में एक टेबल भी पड़ा हुआ है।